और एक आदमी तो सोच रहा है के लूँ या नहीं लूँ।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

जैसे की मैं यहाँ पर देख पा रही हो ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है और ये एक मॉल का अंदर का नज़ारा है।

और एक होल साइड में एक कूलर रखा नजर आ रहा है उधर साइड में एक एक लेडीस जाती न --

रखा नज़र आ रहा है कूड़े कबाड़े कबाड़े की तरह यहाँ पर सामान --

जैसे की यहाँ में देख पा रही हूँ ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नज़ारा है ये अंदर का ग्राउन्ड फ्लोर का नज़ारा है औ--

ये पत्‍ते कुछ हरे हो चुके है और कुछ कुछ पत्‍ते सड़ चुके है।

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं ये एक कछुआ है और ये कछुआ काफी जादा बड़ा है तो--

एक चखोटी पोखर टाइप बनी है तो यहाँ से लोंग फिसल फिसलकर उसमे जाते होंगे पानी में --

नज़र आ रहे हैं तो सारे लोग यहाँ पर ऐन्जॉय कर रहे हैं।

मां के साथ दो बच्‍चे हैं और ये मूर्ति कुछ अ सिंगल दे रही है।

सामने वैरीगेट लगा है कार के आगे लेकिन वो धीरे-धीरे हट रहा है और धीरे-धीरे कार अंदर जा रही है।